और डम्बल्स बोहोत सारा टंगा हुआ है। सेंटर में रखा हुआ है।

और उस बार ये एक घर बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे दरवाजे है और साइड नारियल का पेड़ है और ईटा जमा करके रखा हुआ --

यह एक पार्किंग स्लॉट है जहां पर --